लकड़ी के कपबोर्ड में जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में काफी सारी लंबी लंबी लड़कियां रखी हुई हैं जो की एक के ऊपर एक जमी हुई दिखाई दे रही हैं।

ऊपर ही बल्फ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे दुकान में बहोत सारे टायर जमे हुवे हैं।